ओ दाये और बाये साइड बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कई अधिक मात्रा में और थोड़ी दूर पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है बादल का कलर नीला दिखाई दे रहा है ओ कई सारे पेड़ --

ऑफिस है जो ऑफिस का कलर क्रीम कलर का है दीवालों पे कई पोस्टर लग रहे हैं और एक फंखा ऑफिस में भी नजर आ रहा है लगा हुआ और लाल कलर के परदे भी दिखाई दे रहे हैं।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

साइड में पेड़ भी दिख रहा है थोड़ी सी दूर में जा के कई बड़ी-बड़ी दो बिल्डिंगे भी दिख रही है एक बिल्डिंग का कलर सफ़ेद कलर की है और एक बिल्डिंग पीले और लाल कलर की दिख रही है।